अंदर अअ अंदर की साइड पर टेबल चेयर रखे हुए हैं।

यह तस्वीर लहंगों के शो रूम की है यहां पर साड़ी लहंगा साड़ी लहंगा लेडीज --

तेल के टीन की टीन का गोदाम है यहां पर बहोत सारे डिब्बे कतार में रखे गए हैं।

जिसके सामने व्यक्ति आते जाते नजर आ रहे हैं मेन एंट्रेंस गेट पर--

यहां पर डम्बल बैग्स लगाए गए हैं डंबल्स रखे हुए हैं।

यहां लाइटनिग इसकी छत को डेकोरेट किया गया है यहां पर खाने के लिए टेबल चेयर्स रखे गए हैं पीछे के साइड --

तस्वीर देख कर ही आप यह समझ सकते हैं कि ये बैंक्विट हॉल के सामने का मेन एंट्रेंस तैयार किया जा रहा है।

ऑर्डर के साथ व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

अह ढाबे की नजर आती है ये आप तस्वीर देखकर ही समझ पा रहे होंगे ये खाने की एक छोटा सा ढाबे की तस्वीर है।

और कुछ खाली जमीन पर खड़े होकर--

पीछे से कॉलेज की बिल्डिंग नजर आ रही है और मैदान के अंदर कई सारे बच्चे फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं कुछ बच्चे--

यह तस्वीर किसी गौशाला की नजर आती हैं यह गौशाला के अंदर की तस्वीर है जहां--

गैस चलवाने के लिए भी लाइनें लगी हुई--

यह चारों ओर से हरी जाली से बंद किया गया है।

यहां पर जरूरत का सारा समान उपलब्ध--